जिस चॉगी ब्‍लेक कलर की हैं पीछे चेस्‍ट मशीन है दो लड़के खड़े हुए हैं जो कि इनका रिफ्लैक्शन --

और स्‍काय ब्‍लू कलर की साड़ी पहने हुई हैं एक ऊपर अ रेड कलर की साड़ी में इस पे पोज दे रही है।

कुछ बत्तख भी तैर रही हैं जो कि एक बत्तख की चो --

काउन्टर लगे हुए है कुछ सामान रखा हुआ है उसमे और काफ़ी सारी लेडिज और जेन्ट्स भी खड़े हुए है वहाँ पर एक औल अब--

आल अबाउट राखी का अ मैटर लिखा हुआ है इसके ऊपर।

सेब है और आपके काफी सारे फ्रूट दिख रहे हैं और नीचे यहां पर क्रेट रखी हुई है जिसका।

काफी बड़ा फ्रेम लगा हुआ है और वे नॉर्थ स्क्वायर नाम लिखा हुआ है येल्लो --

झोलग गिरन लटका हुआ है का एक आंटी बैठी हुई है एल्‍लो कलर की टील है एल्‍लो कलर के कपड़ों में ।

और वो कुछ काम कर रही है यहां पर पे एक फूलों के हार टंगे हुए हैं जो माल शादी में पहन जाती हैं ।

बैलून रेड कलर के व्हाइट कलर के ब्लू कलर के बैलून से यह डेकोरेट हुआ है।

और सामने एक टी शर्ट के नीचे काफी बाइक भी दिख रही है और बाहर की साइड भी बाइक खड़ी हुई कुछ।

एक आदमी सामने खड़ा हुआ है स्काई ब्लू और स्काई ब्लू शर्ट में और वाइट पेंट में ।

बॉल बाउल टाइप रखा हुआ है और दो तीन बोतल रखी हुई है बीच में।

मॉडर्न मॉडर्न स्कूल और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का जाल है।

ऐच_डी_ऐफ_सी बैंक का और उसमे एक साइन भी है ऐच_डी_ऐफ_सी का --

के ऊपर दो फ्लावर सपोर्ट रख रखे हुए हैं एक नीचे सॉकेट लगवा लाइट का ।

फ्लावर पॉट दिख रहे है काफी एक साइकल टायर रखा हुआ है काफी सारे शॉ पीस लगे हुए हैं उसमें अ--

कार खड़ी हुई है और इसमें एक विंडो विंडो भी लगी हुई है और एक बहुत जादा पोरसन खुला हुआ है।

छोटी और बड़ी मछलियां हैं एक टब में मछलियां हैं जिसमें जो पानी में जिंदा हैं।

और नीचे रॉनाल्‍डो का पोस्‍टर लगा हुआ है एक उसके साइड में किसी और लड़के का पोस्‍टर लगा हुआ है ए--